है जो ब्लू कलर की टीशर्ट पहने है जो ऊपर खड़े हुए आदमी को देख रहा है और हमें हरियाली भी दिखाई दे रही हैं।

अ ये इमेज मैं एक मोबाइल की है।

इस इमेज में हमें बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं। एक लेडीज दिखाई दे रही है जो पहाड़ की गुफाओ में टेढ़ी अ खड़ी हुई है।

और नीचे मैट बिछी हुई है एक रेड कलर की और दो ग्रीन कलर की और एक महिला खड़ी हुई हैं जो यैलो कलर साड़ी पहने हुई है चस्मा लगाए हुए है ।

और हमें ऊपर पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चेयर दिख रही है जो ब्लैक कलर की है।

ये सैलून की पिक है जिसमें तीन चार चेयर दिख रही है। एक चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है जो टॉवल डाले हुए है।

ये की पिक है जिसमे बहुत सारे आदमी नहाँ रहे है और हमें इसमें पुल भी दिखाई दे रहा है।